और एक ट्रैक्टर के साथ मशीन जुड़ रही है और एक इधर ऑरेंज कलर की ट्रैक्टर के साथ मशीन जुड़ रही है।

डबल टायर है दोनों मशीन में एक एक आदमी मशीन के ऊपर डंडे के सहारे खड़ा है और एक आदमी नीचे--

और एक अनेक यहां मोटरसाइकिल भी खड़ी है और एक बस पे कुछ पिक्चर दिख भी रहा है एक कोट्ठा भी है।

और टमाटर कुछ लाल है कुछ हरे हैं कुछ पीले है और प्याज का रंग--

गुला पिक है और मिर्च ह हर छारी हुई भारी है भिंडी भी हरी है।

और सफेद रंग का तकिया रखा है।

बेड के ऊपर वायर रखी हैं।

यहां पर एक तालाब है तालाब के पौधे हैं और यहां पर--

यहां पर एक नीले बनियान में आदमी कुछ ले रहा है उसपे से दो ए_सी लग रही है यहां पर।

दो आदमी इधर बाईक पे बैठे हैं।

खड़े हुई है और यहां पर उनके ऊपर सब--

वे मास्क रखे धरे हुए है और शिव जी ने त्रिशूल रख शिव जी की मूर्ति है हनुमान जी की मूर्ति हैं माता जी की--

पर एक गाड़ी सही करने की दुकान है एक काउंटर बंद हो रहा है जीने का और एक गाड़ी खड़ी हुई है एक इधर काउंटर बंद हो रहा है ऊपर गाड़ी--

वहाँ पर एक बोट है और वहाँ मछ बहुत सारी मछली दिख रही है और पीछे बहुत सारे मकान भी दिख रहे है एक बोट इधर भी ख़डी हुई है।

चार पांच काउंटर रखे हुए हैं और यहां पर कुर्सी भी रखी हुई है और में खाट भी पड़ी हुई है।

बहोत सारी पेंटिंग्स टंग रही है बहोत ही अच्छे और एक आदमी ने एक आदमी इन्हे पेंटिंग सीखा रहा है।

और एक थर्माकोल का डिब्बा धरा हुआ है एक मग्गा धरा हुआ है एक लेडिस ने हाथ में कुछ ले रखा है।

बहुत सारे पेड़ पेड़ लग रही है और एक स्कूट्री खड़ी हुई है एक बाइक खड़ी हुई है एक पौधा लग रहा है।

यहां पर कुछ ठेली लगी हुई है ये कुछ पे क्रेट पे सामान रखा हुआ एक नीचे कन्नी भी रखी हुई है एक बाल्टी रखी है बहुत ही अच्छे।

और यहां पर बहोत सारी दो जोड़ी चप तीन तीन जोड़ी चप्पल भी पड़ी हुई है व नीचे पेहले अक्षरों में पेहले कलर में कुछ लिख भी रहा है और एक दरवाजा खुल--

और कुछ स्टील की कुर्सियां और स्टील की ही मेज बिछी हैं।

और उसके पुट्ठे पर कुछ लिख भी रहा है और एक सरकारी नलका भी है और नाल नुल सी भी है इसके और उसके --

मेजो पर और काउंटरो पर काफी सारी काफी किताब और कुछ फाइले रखी हैं।

ऊपर छत नहीं है और पीछे तीन हॉट पड़ी है और तो एक बाइक खड़ी हुई है पीछे दो तीन आदमी खड़े हुए हैं विजय एक दुकान बंद हो रही है पीछे।

यहां पे माला घेरने का पैलेस हैं और उसमें बहोत सारे सोफे भी लग रहे है बहोत सारी कुर्सी भी लग रही है बहोत सारे लाइटें भी हैं।

यह फोटो किसी कपड़े वाले दुकान का है।